यह फोटो किसी हेयर सलून की है जहाँ पे दो एक आदमी और उसकी बच्ची बाहर चेयर पर बैठ के --

ढेर सारे नागरिक खड़े हुए हैं। वे अपने बच्चे को झूले पे बैठा कर आनंद दिलवा रहे हैं।

पैर में काले कलर का चप्पल भी है।